कुछ हरे रंग के पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर हम सामने एक मैदान पर--

सामने कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं।

रैक पर बहोत से कपड़े भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और सफेद रंग के सुंदर--

बैंक को देख पा रहे हैं जिसका नाम केनरा बैंक है।

बड़ा सा मैदान देख रहे हैं।

सामने सफेद रंग में एक सुंदर सी मंदिर भी है।

यहां हम सामने एक कमरा देख रहे हैं।

यहां पर हम एक नदी को बहते--

साथ ही एक लकड़ी का डंडा दिखाई दे रहा है।

सामने दो नीले रंग की बड़ी सी पानी की टंकियां रखी हुई है।